देखो एक अट्टी बास्केटबाल को ग्राउंड छ बास्केटबॉल क अट्टी की तरफ छ।

यह देखो था एक पानी के बिच में जाने कशी जगह छ ये पता न बोट से जावे काही से जावे मारे तो हिसाब से लग रही छ ये गुम्बा की जगह छ पाछे देखो बादला हो रहिया चनदीया कलर का--

दो परछाई छोड़ छोटो सो घनो पानी का झरनों छ नाला की तरह यहां पर दूरी लगा हरों कलर को पानी छ कांजी चाल री पानी मे।

अट्टी भी बैठबा की तरफ चाह री छ पेड़ पौधा छ उन्न बैठबो मुश्किल छ फसल जावां यहां तो बैठबा क लिया चट्टानां --

जो देखो एगो पानी की तरफ एक हवेली टाइप सफ़ेद सफ़ेद बड़ा हुआ और खजूर का पेड़ छ पाछे देखो ऊटी की तरफ डूंगर छ --

और लोग बाग देखो अन्दर से सब्जियां खरीद रा च और नीलो कलर चैम्बर पड़यो च यहाँ पर।

यो देखो ता नेशनल वॉर मेमोरियल की एक दिवार छे और अति छोटा -छोटा पेड़-पौधा छे दिवार छे उपर लाल रंग के लिखलो छे नेशनल वॉर मेमोरियल ऊपर भी दिखो थे पेड़-पौधा छे आसमान भी सफेद हो और रिजा बा--